यहाँ पर एक अअअअ दो आदमी तीन आदमी बैठे दिखाई दे रहे है स्कूल है शायद ये टीचर दिखाई दे रहे है पोस्टर पकड़े हुए तीन औरत दिखाई दे रही है।